यह ट्यूटोरियल डेटाबेस डिजाइन पर पिछले ट्यूटोरियल के आगे का भाग है
और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे 4
सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना
प्राईमारी कीज़ उल्लिखित करना
टेबल रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स को स्थापित करना
पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक सरल लाइब्रेरी एप्लिकैशन के लिए डेटाबेस डिजाइन की प्रक्रिया को शुरू किया था
हमने पहले लाइब्रेरी डेटाबेस को बनाने के उद्देश्य का पता लगाया था
फिर हमने लाइब्रेरी के बारे में सूचना खोज कर और सुव्यवस्थित करके अपनी प्रक्रिया को जारी रखा
और हमने सूचना को टेबल्स में बाँटा
और इस तरह हमने अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में चार टेबल्स निर्धारित किये थे बुक्स ऑथर्स पब्लिकेशंस और मेंबर्स
अब अगले स्टेप पर चलते हैं जो है सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना
यहाँ हम तय करेंगे कि किस सूचना आइटम को हम प्रत्येक टेबल में संचित करना चाहते हैं
प्रत्येक सूचना आइटम जिसे हमने पहले निर्धारित किया था एक फील्ड बन गयी है और टेबल में एक कॉलम के रूप में प्रदर्शित है
जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दर्शाया गया है बुक्स टेबल में 5 कॉलम्स हैं जिन्हें फील्ड्स भी कहते हैं
अतः यहाँ प्रत्येक रो या रिकॉर्ड अपने कॉलम्स में वास्तव में एक पुस्तक के बारे में सूचना रखते हैं
उसी प्रकार से ऑथर्स टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड केवल एक रचयिता की सूचना रखता है
और पब्लिशर्स टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड केवल एक प्रकाशक की सूचना रखता है
अब आगे हम कॉलम्स को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सुधार सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम ऑथर नामे को फर्स्ट नामे और लास्ट नामे में अलग कर सकते हैं जिससे कि हम इन कॉलम्स के जरिये खोज या क्रमबद्ध कर सकें
और हमें गणनाओं के परिणाम टेबल्स में अलग कॉलम्स में रखने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि जब हम परिणामों को देखना चाहते हैं बेस तब गणना कर सकता है
अब हमें टेबल्स और कॉलम्स के बारे में स्पष्ट है आगे देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी कीज़ उल्लिखित कर सकते हैं
प्राइमरी की क्या है
प्रत्येक टेबल एक कॉलम या कॉलम्स के समूह को सम्मिलित करना चाहिये जो विशिष्ट रूप से टेबल में संचित प्रत्येक रो को बतलाती है
यह कॉलम या कॉलम्स के समूह को टेबल की प्राइमरी की है
यह प्रायः एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जैसे बुक इद या एक ऑथर इद
हम प्राइमरी की फील्ड्स को बहु टेबल्स के लॉजिकल सम्बन्धित डेटा से जल्दी संघटित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को अपने लिए साथ में ला सकते हैं
और प्राइमरी की में हमारे पास समरूपी वेल्युस नहीं हो सकती
उदाहरणस्वरुप हम लोगों के नामों को प्राइमरी की की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नाम यूनिक अद्वितीय नहीं होते हैं
यहाँ एक ही टेबल में एक ही नाम के दो लोग हो सकते हैं
आगे प्राइमरी की में हमेशा एक वेल्यू होनी चाहिए
यदि यह खाली या निरर्थक है तो हम इसे प्राइमरी की नहीं मान सकते हैं
और हम एक ऑटोनंबर के रूप में कॉलम का डेटा टाइप निर्धारित करके प्राइमरी की कॉलम पर हमेशा एक वेल्यू बना सकते हैं जो बेस स्वतः ही बनाएगा

जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दर्शाया गया है हम अपने टेबल्स के प्राइमरी कीज़ निम्न प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं बुक्स टेबल के लिए बुकिड ऑथर्स टेबल के लिए ऑथोरिड पब्लिशर्स टेबल के लिए पुलिशर्सिड उसी प्रकार से भले ही यहाँ दर्शाया नहीं गया है मेंबर्स टेबल के लिए मेंबरसिड प्राइमरी की होगी
अंततः टेबल्स में प्राइमरी कीज़ निर्धारित करके हम एंटिटी इंटिग्रिटी लागू कर रहे हैं
एंटिटी इंटिग्रिटी सुनिश्चित करता है कि यहाँ टेबल में समरूपी रेकॉर्ड्स नहीं हैं
यह यह भी सुनिश्चित करता है कि फील्ड जो टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को पहचानती है वह यूनिक हैं और कभी निष्प्रभाव नहीं होते
अब हमारे पास तीन टेबल्स में प्राईमरीज़ कीज़ हैं हम रिलेशनशिप्स को स्थापित करके इन सबको एक साथ ला सकते हैं
चूँकि बेस इस संकल्पना का समर्थन करता है
इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं संक्षिप्त में आरडीबीएमएस
यहाँ कुछ प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं और हम उन्हें अभी देखेंगे
सबसे पहले हम देखेंगे कि one to मैनी रिलेशनशिप्स क्या है
दिख रहे चित्र में बुक्स और ऑथर्स टेबल्स को अभी देखते हैं
एक पुस्तक वास्तव में एक रचयिता द्वारा लिखी गयी है
अब यहाँ उदाहरण हैं कि जहाँ दो या कई लोग एक ही पुस्तक के सह लेखक होते हैं
किन्तु हम अपने उदाहरण को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही पुस्तक को रचने तक सीमित करते हैं
अपने उदाहरण के साथ जारी रखते हैं कि एक रचयिता कई पुस्तकें लिख सकता है
अतः ऑथर्स टेबल में दिखलाये जा रहे एक रचयिता के लिए यहाँ पर बुक्स टेबल में रचयिता के द्वारा लिखी गयी काई सारी पुस्तकें हो सकती हैं
इसलिए यह one to मैनी रिलेशनशिप है
और हम इसे अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में दर्शा सकते हैं ऑथर इद को लेकर जोकि ऑथर्स टेबल में प्राइमरी की है और उसको बुक्स टेबल में जोड़कर
अतः बुक्स टेबल में ऑथर इद को फॉरेन की कहते हैं
उसी तरह से पब्लिशर इद जोकि पब्लिशर्स टेबल में प्राइमरी की है यह बुक्स टेबल में जोड़कर फॉरेन की बन जाती है
अतः कॉलम या कॉलम्स के समूह को बाँटने से हम डेटाबेस में one to मैनी रिलेशनशिप्स को दर्शा सकते हैं
और फॉरेन कीज़ का इस्तेमाल करके टेबल रिलेशनशिप्स को निर्धारित कर सकते हैं
अतः रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए टेबल में एक प्राइमरी की को अन्य टेबल में एक फॉरेन की की तरह दर्शा सकते हैं
फलस्वरूप हम रेफ्रेंशियल इंटिग्रिटी को लागू करते हैं
मतलब टेबल में प्रत्येक फॉरेन की वेल्यू सम्बन्धित टेबल्स में अनुकूल प्राइमरी की वेल्यू होगी
आगे देखते हैं कि many to मैनी रिलेशनशिप क्या होता है
अब टेबल डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं
एक पुस्तक जितने चाहे उतने लाइब्रेरी सदस्यों को जारी की जा सकती है यह मानते हुए कि यहाँ पर कई सारी प्रतियाँ उपलब्ध हैं उसी प्रकार से एक सदस्य कितनी भी चाहे पुस्तकें ले सकता हैअवश्य ही यह मानते हुए कि पुस्तकें उपलब्ध हैं अतः यहाँ हमारे पास कई पुस्तकें कई सदयों को जारी करने का एक उदाहरण है
जो many to मैनी रिलेशनशिप को दर्शाता है
अतः हम इस many to मैनी रिलेशनशिप को अपने डेटाबेस में दर्शा सकते हैं
एक तीसरी टेबल बुकसिश्यूड बना कर जिसे जंक्शन टेबल भी कहते हैं
और यहाँ हम प्रत्येक दोनों टेबल्स बुक्स और मेंबर्स से प्राइमरी कीज़ को बुकसिश्यूड टेबल में प्रविष्ट करेंगे
इसकी वजह से बुकसिश्यूड टेबल सदस्य को जारी की गयी प्रत्येक पुस्तक को रिकॉर्ड करता है
अतः तीसरा जंक्शन टेबल बनाकर हम many to मैनी रिलेशनशिप्स को दर्शा सकते हैं
और आखिर में यहाँ one to ओने रिलेशनशिप है
कभी कभी कुछ एट्रिब्यूट्स या कॉलम्स केवल कुछ विशेष डेटा के लिए निश्चित होते हैं और इसलिए कदाचित डेटा से भरे जाते हैं
चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें केवल एक रचयिता के पास वेबसाइट एड्रेस है और बाकी के पास नहीं
और ऑथर्स टेबल में नई वेबसाइट कॉलम को ज्यादातर खाली छोड़ने से हम डिस्क स्पेस बर्बाद कर रहे हैं
अतः हम इस कॉलम को एक नई अतिरिक्त टेबल स्थानांतरित कर सकते हैं जिसकी प्राइमरी की वही ऑथर इद होगी
अतरिक्त टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड वास्तव में मुख्य टेबल के एक रिकॉर्ड के अनुरूप होगा
जो one to ओने रिलेशनशिप को दर्शाता है
अतः यहाँ हमने अपने डेटाबेस में रिलेशनशिप्स को स्थापित करना सीखा
इसी के साथ हम लिबरऑफिस में डेटाबेस डिजाइन के दूसरे भाग के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने डेटाबेस डिजाइन में निम्न विषय सीखें 4
सूचना आइटम्स को कॉलम्स में बदलना 5
प्राइमरी कीज़ उल्लिखित करना
टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद